और उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है।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

और उसके साइड में एक बड़ी सी लाइटिंग --

फूलों की माला से डेकोरेट किया हुआ है।

एक कैफे एरिया दिखाई दे रहा है जिसमें तीन आदमी बैठे हुए हैं दो पर्दे दिखे हैं और--

एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि हरे रंग की शर्ट पहने हुए है और नीचे ब्लैक कलर की लवर पहनी हुई है।

एक ट्रक दिखाई दे रहा है जो की वाइट कलर का है।

और ग्राउंड की बाउंड्री में पेड़ है।

जिसमें तीन लड़कियाँ साइड में खड़ी हुई हैं।

एक ऑफिस दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा सोफा दिखाई दे रहा है।

एक पेड़ दिखाई दे रहा है भारत दिखाई दे रहा है।

एक पत्थर दिखाई दे रहा है जिसके ओर बगल में एक पारक पार्क है बहुत सारे फूल खिले हुए हैं।

और एक गाड़ी खड़ी है व्हाइट कलर की।

एक दुकान है जिसमें एक सब्जी वाला फल बेच रहा है।

और बादल दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे लोग यहां पे मछली खरीदने के लिए आ रहे हैं मछलियों को नीचे त्रिपाल पर लगाया हुआ है।